और यह नल से पानी निकाल कर और ये बहुत ही अच्छा दृश्य दिखा रहे हैं फोटो में कुछ व्यक्ति खड़े हैं।

इस फोटो में ये कोई एक शॉप है इस शॉप में कुछ पंखे नजर आ रहे हैं और एक पंखा ऊपर व्हाइट कलर की छत में ब्लैक पंखा नजर आ रहा है।

इधर दो ब्लैक कलर की कुर्सिया नजर आ रही है कुर्सियों के आगे शिशे लगाए शिशो के आगे कुछ समान पड़ा है।

एक ये बाल्टी पड़ी है नीचे और ऊपर एक ए_सी लगी है ये ब्लैक ब्लैक पेंट किया नजर आ रहा इस फोटो में--

परथन भी नजर आ कुछ समान नजर आ रहा--

इस फोटो में यह कोई मंदिर है मंदिर के आगे कुछ यह लगा नजर आ रहे हैं एक वाटर कूलर नजर आ रहा है ऊपर नीले कलर की ये टीन शेड --

लड़की के एक उधर कुछ और भी सामान पड़ा नजर आ रहा--

वह उसके व्हाइट कलर के पेंट शर्ट पहनी हैं ऊपर कुछ पोस्टर लगाए हैं पोस्टर इधर एक लेडिज खड़ी हैं।

यह कोई स्टेशन है स्टेशन के ऊपर छतरी लगी हुई है सोलर की और ये एक यहां पर दो तीन प्रकार की कुर्सी लगी हुई है।

ये कोई सड़क है। सड़क के उउ--